बहुत सारे चट्टाने है और बहुत छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे है और यहाँ पे सामने हमे कुछ पत्ती नजर आ रही है बड़ी-बड़ी पत्ती नजर आ रही है और पीछे बहुत सारे पेड़ नीला कलर का आसमान--

यहां पर एक घर बना हुआ है घर दो मंजिले का है यहां पे एक गैलरी भी नजर आ रही है गैलरी का पिलर बहुत ही डिजाइन में बनाया गया है और गैलरी में एक सफेद कलर का पोस्टर टंगा हुआ है।

यहाँ पे हमे एक रिसोर्ट देखने को मिल रहा है रिसोर्ट के अंदर पानी हरे कलर ----

तो कुछ लड़का लड़कियां यहाँ पर डांस करती नजर आ रही है यहाँ पे सब अ स्लाइडिंग लगे हुए हैजो कुछ स्ट्रैट है और कुछ जिक जेक वे मे है और यहाँ पे सब बच्चे इंजॉय--

यहाँ पे एक रोड है रोड के किनारे पे एक फूलो का दुकान है यहाँ पे एक गजरा एक लाइन से बहुत सारे गजरे बने हुए हैं गजरे में एक छोटा-छोटा चमकी वाला पेपर भी लगा हुआ है थै --

यहाँ पे एक मंदिर बनी है मंदिर बहुत ही बड़ी है मंदिर में लाइट से डेकोरेशन किया गया है और फूलों का डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे केले के पत्ते बहुत सारे लग रखे हुए हैं यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है जिसमें बाल्टी भी रखा हुआ है और एक गैमिला रखा हुआ है।

यहां पे एक नदी है नदी के किनारे पे एक पीले कलर का बास्केट रखा हुआ है जिसमे बहुत सारी मच्छी रखी हुई है और एक टोकरी रखा हुआ है जो खाली है और एक पीले कलर का बास्केट है जिसके अंदर एक कपड़ा लगा के मच्छी रखा गया है।

और यहाँ पे चेयर पे कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहें हैं इसमें एक लड़की भी बैठी है और यहाँ पे उनके पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं एक छोटा सा बना हुआ है उसके अंदर समान रखे --